बहुत सारे लोग ये फूल तोड़ने में लगे बहुत सारा लेडीज लगी हुई बहुत सारे फूल तोड़ने के लिए इन लोगों को एक फूल तोड़ने के लिए पैसे दिए जाएँगे तभी जा के ये लोग काम कर रहे।

लाइन के आजकल बहुत यूज़ होते हैं लैपटॉप चला सकते हैं लाइन के बहुत आवश्यकता --

क्या भूतिया घर है ये पंखा भी लगा है ये जो घर है अलग ही लेवल का है ई नीले कलर की कुछ दिख रही है कुछ अ अलग ही अलग कलर के हैं सफ़ेद कलर का घर है इसके अंदर में एक लाइट लगा गया है जो बहुत ही लोकल एरिये जैसे लग रहा है ये इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है जे लेकिन इसमें कुछ जाली टाइप का कुछ दिख रहा है |

यहाँ पे एक बस है बहुत अच्छी है इन बसों में चक्के काले कलर के होते हैं | बस काले कलर का है और इस बस में इन सफ़ेद कलर के लिखा गया है कि बन्दीपुर टाइगर री सर्वी रिसर्ब ये जो लिखा हुआ है बहुत ही बहुत ही अच्छे से लिखा गया है ।

इस पानी पे एक नाव चलती हैं नाव पे चल के एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर-दूर जा सकते हो यहाँ पे एक मिट्टी है जो बहुत ही गिला है और यह अलग ही प्रकार का दिख रहा इस पानी बहुत गहरा है और यहाँ पे बहुत सारे घास दिख रहे है।